यह एक पिज़्ज़ा का डेयरी पार्लर है। यहाँ पे आइसक्रीम --

एक बहुत सुन्दर स्टेज बनाया गया है। इसको बहुत सारे फूलो से सजाया गया है।

बोहोत सारे ऑटो भी खड़ा है। साइड में बाइक भी खड़ा है। कुछ लोग रोड के साइड में बैठे हुए हैं।